ये लोग ड्रेस पहने हुए हैं देखने में बहोत --

पीछे हाथ किए हुए है मोटरसाइकिल है। एक लड़की साईकल से जा रही है।

आदमी दिख रहे हैं दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत सारे घांस उगे हुए हैं। नदी में नीचे का घर दिख रहा है आदमी दिख रहा है पूल बहुत सुंदर बनाया गया है। आसमान भी दिख रहे हैं। आसमान में दिख रहा --

बहुत सारे भगवान के फोटो हैं | ये देखने सजा के रखा हुआ है | देखने में बहुत अच्छा लग रहा है | फर्श है फर्श पे टाइल्स लगा हुआ है | यह बहुत सुंदर लग रहा है देखने में | बहुत मस्त दिख रहा है |

यहाँ मंदिर जैसा दिख रहा है देखने में बहुत अच्छा है। इसमें दान-पेटी भी रखा हुआ है बहुत मस्त लग रहा है। यह लाल कलर से कलर किया हुआ है। आसमान भी दिख रहा है देखने में बहुत मस्त लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है।